जैसे जिम हॉल में होती है ना वही वाली मशीन है ये आप देख सकते है काफी अच्छी क्वालिटी की और काफी अच्छी वैरायटी की है देख पा रहे है।

और यहां हम देख पा रहे हैं सामने यहां कुछ दुकानें बनी हुई हैं अलग अलग और यहां पे बड़ा सारा ग्राउंड है उसमें कुछ लड़कियां खड़ी हैं।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमे एक बहोत प्यारा बहोत ही सुंदर मकान दिखाई दे रहा है और ये काफी बड़ा सारा है आप खुद देख सकते हैं इसका डिजाइन काफी प्यारा है।

यहां पे एक शॉप है शॉप आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने की अलग-अलग तरह के यहां पे खिलौने मिलते हैं देख सकते हैं आप यहां पे --

प्लेटफार्म पर आप देख सकते हैं एक ट्रेन खड़ी है आसपास कुछ चेयर लगी हुई सीटिंग के लिए देख सकते हैं काफी अच्छी फैसिलिटी है।

नाव के बारी एक भैया खड़े हैं और उसके पास एक और नाव खड़ी है देख सकते हैं हम यहां से बहुत ही प्यारी जगह है यहां पे भी खुद देख लीजिए।

पास उधर साइडो की तरफ आप देख सकते हैं काफी सारी पहाड़ियां हैं और बहोत ही प्यारी जगह है देख सकते हैं यहां पे।

सामने एक दुकान है और उसके बाहर कुछ बाइक खड़ी है तो कुछ आदमी भी खड़े देख सकते हैं एक बड़ा सारा पेड़ है यहां पे --

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पर कुछ छोटी और बड़ी मछलिया हमे दिखाई दे रही है और कुछ अंकल बैठे हैं।

देख सकते है आप एक विद्यालय है और ये काफी बड़ा सारा है यहां पे कुछ भैया खड़े हैं देख सकते हैं जो आपस में रंगोली बना रहे हैं।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

प्लेटफार्म है और ये काफी बड़ा सा रहा है देख सकते हैं आप काफी अच्छी फैसिलिटी है बैठने की जगह यहां पे दी गई है बहोत ही प्यारी जगह है ये।